अरुण राज करके उस पे लिखा हुआ है एक आदमी दिख रहा है रिक्शे पे।

इस दुकान के बाहर मलवा पड़ा हुआ है।

उस टीचर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और हमें ये इस पिक्चर में से ज्यादा और कुछ भी दिखाई नही दे रहा।

अलग-अलग तरह के घासे दिखाई दे रही हैं।

इसमें रिजॉर्ट है अच्छा सा--

किसी के ऑफिस की टेबल दिखाई दे रही है रिसेप्शनिस्ट टेबल है ये।

एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है आइसक्रीम पार्लर कहते हैं जिसे।

बेकरी के शॉप पे केक दिखाई दे रहा--

इस पिक्चर में आपको ज्योति बुक स्टोर की अपेक्षा काफी सारी अलग अलग तरीके की किताबें दिखाई जा रही हैं।

इस पिक्चर में एक हॉस्टल की पिक्चर दिखाई दी है हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट की ये यूथ हॉस्टल है जयपुर का --

इस पिक्चर में एक आदमी अपनी ही फोटो सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

इसपे गाड़ी का नंबर भी नहीं लिखा हुआ--

इसके बाहर एक लाल टी शर्ट पहने आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी बस में चढ़ रहा है।